यहाँ सामने में एक ग्रीन कलर नीचे में बिछाया हुआ है। बहोत --

एक रोड के बीच में एक आदमी दिखाई दे रहे है। दो --

उधर साइड में कुछ लड़कियां बैठी हुई है।